ठंडे के दिनों में अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं।

विंडो भी दिखाई दे रहा है उसके नीचे के लोगों के बैठने के लिए कुर्सी रखी हुई है।